और यहां एक मूर्ति है माता की उसके नीचे कुछ फ्रूट्स वगैरा और सामान रखा हुआ है माता का।

कांच की खिड़की लगी हुई है और पास ही में--

और यहां रंगोली बनी हुई है।

और यहां कुछ जेंट्स लोग भी खड़े हुए हैं मास्क लगाके--

गेट के वहां से कुछ लोग आते हुए दिख रहे हैं।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

वो फूल खरीद रहे हैं और यहाँ पर कुछ और समान भी दिख रहा है जो ये लोग खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं और पीछे --

ये एक ले जेंस कपड़े की शॉप दिख रही है।

कुछ सीढ़ी बनी हुई है और चढ़ाव भी बनी हुई है यहां--

हां एक ए_टी_एम मशीन लगी हुई है और अंदर कुछ एक आदमी पैसे निकल रहा है और बाहर कुछ दो तीन आदमी खड़े हुए हैं।

ये एक जिम की जिम की इमेज है।

होती है और ये बिल्डिंग के बाहर एक सफेद कलर की गाड़ी खड़ी हुई है अंदर गेरेज --

ग्रे कलर की कार खड़ी हुई है और यहां पर बाहर एक्टिवा और बाइक खड़ी हुई है और उसके पास वाली बिल्डिंग में एक सीढ़ी लगी हुई है।

ऊपर कुछ कार के बैनर लगे हुएं ये एक बड़ा सा हॉल है।

और यहां पर एक फर्श पर टाइल्स लगी हुई है।

और यहां पर कुछ चेयर रखी हैं बैठने के लिए।

और ये तीन-तीन छे बोट वगैरा है।

सामने कुछ बिल्डिंग भी दिख रही है और पेड़ लगे हुए है सामने की ओर--

इसमें भी खुद ऊपे केंद्र लिखा हुआ है।